इस चित्र में हमें एक पूल गेम दिखाई दे रहा है।

पूल गेम में दो टेबल रखी हैं दो लैंप है सामने वाली दीवार नीले रंग की है।

स्कूटर के पास एक आदमी खड़ा है।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

सफेद रंग की छाती कुछ पर्दे डले हैं खिड़की में।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

बिल्डिंग सफेद रंग की है बिल्डिंग के बाहर एक--

ममी के साइड में एक बोर्ड लगा है बोर्ड के ऊपर मम्मी डैडी लिखा हुआ है।

काउच का काउंटर है काउंटर के अंदर तरह-तरह की मिठाई रखी है और सफेद रंग के बल है एक पंखा है टोल काटा है।

एक पलंग है पलंग के ऊपर आदमी बैठे हैं सामने एक दरवाजा है।

इस चित्र में हमें एक बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है।